नमस्कार दोस्तों इपिथॉन के साथ शुरूआत पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल की अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे इपिथॉन इंटरप्रेटर का उपयोग करना
इपिथॉन इंटरप्रेटर बंद करना
इपिथॉन सेशन हिस्टोरी को नेविगेट करना
इपिथॉन फंक्शन्स लिखने के लिए tab completion का उपयोग करना
फंक्शन्स का प्रलेखन देखना
अपूर्ण और गलत कमांड्स को रोकना
इपिथॉन एक परिष्कृत पाइथन इंटरप्रेटर है जो विशेषताएँ प्रदान करता है जैसे tab completion ईजियर एक्सेस टो हेल्प और कई अन्य कार्यात्मक
पहले देखते हैं कि इपिथॉन इंटरप्रेटर को शुरू कैसे करें
पहले टर्मिनल खोलें टर्मिनल में इपिथॉन टाइप करें और एंटर दबाएँ
पाइथन संस्थापन के वर्जन और कुछ मददगार कमांड्स के बारे में जानने के बाद हमें In1 के साथ एक प्रोम्प्ट मिलता है
लेकिन यदि आपको एक एरर इपिथॉन इस नोट इंस्टॉल्ड मिलती है तो पैकेजस कैसे संस्थापित करेंइस ट्यूटोरियल का अनुकरण करें
अब देखते हैं कि हम इपिथॉन इंटरप्रेटर को बंद कैसे कर सकते हैं Ctrl D दबाएँ
सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोम्प्ट प्रदर्शित होगा डीओ यू रियली वांट टो एक्सिट हाँ के लिए य टाइप करें और इपिथॉन बंद करें और नहीं के लिए एन टाइप करें यदि आप इपिथॉन बंद नहीं करना चाहते हैं
य दबाएँ
अब क्योंकि हमने इंटरप्रेटर बंद कर दिया है तो इपिथॉन टाइप करके इसे फिर से शुरू करें
और अब देखें कि इंटरप्रेटर का उपयोग कैसे करें
शुरूआत साधारण चीज से करें एडिशन
प्रोम्प्ट पर 12 टाइप करें
इपिथॉन तुरंत आउटपुट के रूप में 3 देता है
ध्यान दें कि आउटपुट एक Out1 इंडिकेशन के साथ प्रदर्शित होता है
अब कुछ अन्य ऑपरेशन्स करें जैसे 5 माइनस 3 7 माइनस 4 6 इंटो 5
अब देखते हैं कि इपिथॉन कमांड्स की हिस्ट्री कैसे याद रखता है
उदाहरणस्वरूप प्रिंट 12 सभी बातों को टाइप करने के बजाय 12 कमांड पर वापस जाने के लिए अप एरो की का उपयोग करेंजो हमने पहले किया अब लाइन की शुरूआत को नेविगेट करने के लिए लेफ्ट एरो की का उपयोग करें और print शब्द टाइप करें और स्पेस दबाएँ
हमने लाइन को प्रिंट 12 में बदल दिया है अब एंटर दबाएँ
इंटरप्रेटर 3 परिणाम प्रिंट करता है
कृपया ध्यान दें कि इंडिकेशन आउट स्क्वैर ब्रैकेट यहाँ नहीं दिख रहा है
अब प्रिंट 10 इंटो 2 करें
हम पिछली कमांड 12 पर जाने के लिए अप एरो की का उपयोग करते हैं
अब 1 प्लस 2 को 10 इंटो 2 में बदलें और एंटर दबाएँ
अब तक हमने देखा कि इपिथॉन इंटरप्रेटर शुरू कैसे करें बंद कैसे करें और इपिथॉन में पिछली कमांड के माध्यम से नेविगेट कैसे करें
अब देखते हैं tab completion क्या है एक उदाहरण लेते हैं मानिए कि हम राउंड फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं
इसके लिए हम प्रोम्प्ट पर केवल रो टाइप करेंगे और tab की दबायेंगे
जैसा कि आप टर्मिनल पर देख सकते हैं इपिथॉन ने कमांड रो को राउंड में पूर्ण कर दिया है इपिथॉन की इस विशेषता को tab completion कहते हैं
अब tab कंप्लीशन की कुछ अन्य संभावनाओं को देखते हैं टाइप करें र और फिर tab दबाएँ
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इपिथॉन कमांड पूर्ण नहीं करता
क्योंकि यहाँ र की कई संभावनाएँ हैं
इसलिए यह केवल र की सभी संभावनाओं को सूचिबद्ध करता
अब एक अध्याय का अभ्यास करें
विडियो को रोकें समस्या को हल करें और विडियो पुनः चलाएँ
एबी के साथ शुरूआती कमांड्स ज्ञात करें
आ के साथ शुरुआती कमांड्स को सूचिबद्ध करें
एबी tab एबीएस में पूर्ण करता है और आ tab हमें आ से शुरूआत होने वाली सभी कमांड्स की सूची देता है
अब देखते हैं कि एबीएस किस फंक्शन के लिए उपयोगित है
हम इसे ज्ञात करने के लिए इपिथॉन की हेल्प विशेषता का उपयोग करेंगे
फंक्शन के प्रलेखन को देखने के लिए फंक्शन नाम के बाद क्वेस्शन मार्क टाइप करें
इपिथॉन इंटरप्रेटर फंक्शन के लिए प्रलेखन दर्शाएगा
फंक्शन एबीएस के प्रलेखन को देखें टाइप करें abs
और एंटर दबाएँ
जैसा कि प्रलेखन दर्शाता है एबीएस एक इनपुट के रूप में संख्या को स्वीकार करता है और इसकी सुनिश्चित वेल्यू वापस करता है
कुछ उदाहरणों को देखते हैं
इंटरप्रेटर पर टाइप करें एबीएस और एबीएस
हमें दोनों केसेस में अपेक्षित 19 प्राप्त हुआ
अब इसे दशमलव संख्याओं के लिए करें टाइप करें abs 105 हमें परिणाम के रूप में 105 मिला
यहाँ विडियो रोकें निम्न अध्याय का अभ्यास करें और विडियो पुनः चलाएँ
राउंड का प्रलेखन देखें और देखें कि इसका उपयोग कैसे करें
और आप इपिथॉन इंटरप्रेटर में राउंड क्वेस्शन मार्क टाइप करके राउंड के प्रलेखन को देख सकते हैं
यदि आप ध्यान दें यहाँ न्दिगित्स के आस पास अतिरिक्त स्क्वैर ब्रैकेट्स हैं
इसका अर्थ है कि न्दिगित्स वैकल्पिक है और 0 डिफॉल्ट वेल्यू है
पाइथॉन प्रलेखन में वैकल्पिक पैरामीटर्स स्क्वैर ब्रैकेट्स में दर्शाए गए हैं
फंक्शन राउंड दिए गए प्रिसिशन पर संख्या को घेरता है
यहाँ विडियो रोकें निम्न अध्याय की कोशिश करें और विडियो पुनः चलाएँ
अब हम फंक्शन राउंड के साथ कुछ और उदाहरणों का अभ्यास करते हैं
round248 round248 1 round248 2 round2484 round2484 1 round2484 2 का आउटपुट जाँचें
अब हमें 20 25 और 248 मिला जो अपेक्षित हैं
अब देखते हैं कि टाइपिंग एरर्स को कैसे सही करें जो प्रायः हम टर्मिनल पर टाइपिंग करते समय करते हैं
जैसा पहले दर्शाया गया है यदि हमने पहले ही एंटर की नहीं दबाई हम एरो कीज का उपयोग करके नेविगेट कर सकते थे और डिलीट या backspace की का उपयोग करके डिलीशन कर सकते थे और एरर्स को सही कर सकते थे
अब जानबूझ कर टाइपिंग एरर करें टाइप करें round2484 और ब्रैकेट बंद किये बिना एंटर दबाएँ
हमें डॉट्स के साथ एक प्रोम्प्ट मिलता है
यह प्रोम्प्ट इपिथॉन का कंटीन्यूएशन प्रोम्प्ट है
यह प्रदर्शित होता है जब पिछली लाइन अधूरी हो
अब ब्रैकेट बंद करके उसी उदाहरण की कमांड को पूर्ण करें और एंटर दबाएँ
हमें अपेक्षित आउटपुट मिला जो है 20
अन्य उदाहरण में यदि हम लंबे और अधिक जटिल वाक्य में टाइपिंग एरर करते हैं और कंटीन्यूएशन प्रोम्प्ट के साथ समाप्त करते हैं तो हम इपिथॉन इनपुट प्रोम्प्ट पर वापस आने के लिए और कमांड को रोकने के लिए ctrl सी टाइप कर सकते हैं
यहाँ विडियो रोकें निम्न अध्याय का अभ्यास करें और विडियो पुनः चलाएँ
टाइप करें राउंड2484 और एंटर दबाएँ
और फिर ctrl सी का उपयोग करके कमांड रद्द करें

कमांड राउंड2484 2 टाइप करें

अब जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या सीखा इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा 1
इपिथॉन टाइप करके इपिथॉन इंटरप्रेटर शुरू करना
ctrl d का उपयोग करके इपिथॉन इंटरप्रेटर शुरू करना
ऐरो कीज का उपयोग करके इपिथॉन की हिस्ट्री में नेविगेट करना
tab completion क्या है
क्वेस्शन मार्क का उपयोग करके फंक्शन्स का प्रलेखन देखना
ctrl c का उपयोग करके रोकना जब हमने एरर की
यहाँ आपको स्वतः हल करने के लिए कुछ प्रश्न हैं
इपिथॉन पाइथॉन के समान एक प्रोग्रामिंग लैंवेज है
ट्रू या फलसे दूसरा कौन सा की कॉम्बिनेशन इपिथॉन को बंद करता है
Ctrl सी Ctrl डी Alt सी Alt डी आखिरी प्रलेखन को दर्शाने के लिए इपिथॉन में कमांड के अंत में किस अक्षर का उपयोग किया जाता है
अंडर स्कोर क्वेस्शन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एम्परसैंड एएमपी और उत्तर हैं इपिथॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है यह केवल एक इंटरप्रेटर है
दूसरा हम इपिथॉन इंटरप्रेटर बंद करने के लिए Ctrl डी का उपयोग करते हैं
आखिरी है हम प्रलेखन दर्शाने के लिए फंक्शन के नाम के अंत में160
का उपयोग करते हैं
आशा है आपने इस ट्यूटोरियल का आनंद लिया और इसे लाभदायक पाया होगा
धन्यवाद